और नदी के किनारे ये लंबे बड़े बड़े झाड़ हैं।

वहां एक पंच मशीन भी है और वॉटर कैन के बाजू के एक ब्लू कलर में एक डस्टबिन उसके बाजू में एक कुर्सी है।